के लिए दिखाई दे रहे है और सामने एक बजार दिखाई दे रहा है।

दी गई है। इसमें बहुत बड़ा फ्ले बिल्डिंग बनाई गई है और आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें बादल छाए हुए हैं यह फोटो --

एक टेबल बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है और टेबल लगाए गए हैं इसमें एक फ्रिज भी रखा गया है और एक टी_वी दीवार में लगाया गया है इसमें से--

भगवान के फोटो भी लगाये गये है और इसमें--

बहोत सारी लाइटे जलाई गई है यह फोटो कमरे के अंदर कि ली हुई है।

खुली हुई हैं और इसमें ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियां भी बनाई गई हैं यह फोटो दिन के टाइम ली गई है।

यह फोटो एक दुकान के अंदर ली गई है इसमें दुकान के अंदर शेल्फ भी बनाई गई है शेल्फ में बहोत सारा सामान रखा गया है और--

कमरे बनाए गये हैं जिसका एक दरवाजा खुला है और एक मे खिड़कियां ही दिखाई दे रही है और इसके पीछे एक--

यह फोटो एक रेस्टोरेंट के अंदर ली गई है इसमें एक टेबल लगा हुआ है टेबल के ऊपर एक जग और नमक का डब्बा रखा गया है और आचार भी रखा है।

सामान खरीद रहे हैं और कुछ लोग सड़क के बाहर खड़े हैं यह फोटो दिन के समय ली गई है इसमें धूप भी लगी हुई हैं और बहुत सारी दुकानें बनी हैं।